और सामने कपड़े सूखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्डिंग के बाहर यह होटल वगैरा सा ही लग रहा होगा या कुछ कार्यालय होगा ठीक से क्लीयर नहीं है।